और एक फ्रिज में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखे गए हैं जिनके रंग हरा--

स्टेज है जिस पर नीले और लाल रंग के पर्दे लगाए हुए हैं।

सामने कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे है जिनके रंग हरे रंग के दिखाई दे रहे है और एक --

पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी हैं जिनमें नीले और भूरे रंग के कपड़े--

पेहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पेट्रोल पंप है जिसका रंग नीला और सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

हरे रंग के दिखाई दे रहे है।

सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है और यहाँ बहोत सारी--

सामने एक दुकान है जिसका रंग--

सफेद रंग का दिखाई दे रहा है और यहाँ बहोत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

जोकि लाल काले आदि रंग के दिख रहे हैं।